इसके ऊपर एक बड़ा सा वाइट कलर का बल्ब लगाया हुआ है।

आस पास छोटी छोटी घासे भी जमी हुई हैं जो की हरे कलर की हैं।

जो बहुत सारा पूजा का सामान रखा हुआ है जैसे कि माचिस घीव अगरबत्ती ये सब।

दूसरा व्यक्ति है जिसने टी शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है।

इस कॉपी किताब दुकान का नाम है पुस्तक बिहा--

उसके अगल बगल बहुत सारी साईकिलें फेंकी हुई है जो कि काले कलर की है।

नीचे ग्रीन कलर का कॉर्पेट बिछाया हुआ है।

ऑरेंज कलर के गेंदे के फुल व्हाइट कलर का गजरा का फूल ऊपर में बहोत सारे रेड कलर के फूल पीला कलर का फूल और ग्रे कलर का फूल--

ऊपर में काले रंग का फैन लगाया गया--

खेत में बहोत सारे फूल लगाए हुए हैं जो कि गेंदे के--

कंप्यूटर में सामने में एक फिगर --

जीसमें नीले कलर का पर्दा लगाया हुआ है।

एक आधार कार्ड है पास में एक कैंची भी है।

यह दृश्य में एक व्यक्ति जो की नीले कलर का टी_शर्ट पहने हुए हाथ में वॉच पहने हुए फोटो क्लिक कर रहा है उसके एक हाथ में कड़ा है।

उसके बगल में दो रेड कलर की चेयर लगाई हुई है।

ये जो बिल्डिंग है उसका कलर क्रीम कलर का है।

जो की वाइट रंग के एक दूसरे से और अटैच --

नीचे नेहरू जी का फोटो लगाया हुआ है फ्रेम --

एक व्यक्ति इसमें व्हाईट कलर का शर्ट और क्रीम कलर पेंट पहना--

दूसरा व्यक्ति जिसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ--

सामने एक डेस्क का जो कि काले रंग का है।

नीचे मे नीले कलर के कारपेट बिछाए हुए हैं जो कि व्हाइट और ब्लू कलर के हैं।

यह दृश्य एक सुखदेव प्लेस का है।

गेंदे के फूल हैं और भी बहुत सारे फूल हैं जैसे कि व्हाइट कलर के ग्रीन कलर का ब्लू कलर का --

बगल में बहुत सारी लैंप लाइटें लगाई हुई है जो की वाइट कलर की है।

यह दृश्य एक बहुत बड़ा बालू इलाका का है।

पास में बहुत सारे टेबल ये सब रखे गए हैं बैठने के लिए।

सामग्री में रखी हुई जैसे कि एक डूबा भी रखा हुआ है।

दूसरा व्यक्ति जिसने क्रीम कलर शर्ट पहना हुआ है।

उसके बगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जो कि ग्रीन कलर का है।

आसपास बहुत सारे लोहे और पटरे फेंके हुए हैं।

ऊपर में वाइट कलर की बड़ी सी लाइट लगाई हुई है।

उसके बगल में सीढ़ी लगी हुई है।

एक महिला है जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है।

आस पास बहोत सारे ईखे टांगे हुए--

पास में एक छतरी जैसा लोहे से बनाया गया है।

पास में बहुत सारी सूखी पत्तियां गिरी हुईं हैं और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए--

इसके पास में एक व्यक्ति जोकि कि पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहने हुए है।

आसपास रोड पर बहुत सारे एरो बनाया हु--

सामने एक गाड़ी पे दुकान लगाया है।